जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है इस पार्क में हमें--

इस फोटो में हमें एक--

फ्लाइट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसकी छत पर और कुछ शीशो पर हमें--

और कुछ लाईटें छत पर लगी हुई--

बहोत बड़ा मेला दिखाई दे रहा है जिसमें हमें--

सड़े हुए नजर आ रहे हैं और कुछ हमें यहां पर पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं।

खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ टेबल बैठने के लिए लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे टेडी बियर और कुछ और खिलौने--

सर्विस होते हुए नजर आ रही है।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

पिलर बने हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक पब्लिक स्कूल दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जोकि एक मैदान है वहाँ पर हमें--

बहोत सारी मिट्टी पड़ी हुई हैं।

बहोत सारी सड़ीया लगी हुई--

जो की बहुत ही बड़ा है।